और ब्रिज जो है आयरन का बना हुआ है और वह सीमेंटेड बेस पे रखी गई है और --

रंग गुलाल खेल रहे हैं।

ये इमेज एक सड़क की है जिस पे एक पिंक कलर की बस --

लगी हुई है और उस पे पैसेंजर चढ़ रहे हैं।

यह इमेज एक फिश शॉप की है जिसमें एक महिला --

महिला और बैठी हैं जो इस शॉप की मालकिन लग रही है।

आधी कपड़े बेचे जा रहे हैं।

यह इमेज एक डांस स्टूडियो की है।

और लोग पूजा कर रहे हैं।

मंदिर जैसे बनाई गई आकृति पे विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए है।

ये इमेज एक एचडीएफसी बैंक --

जो गोपाल गंज ब्रांच की है।

बगल में ही नो पार्किंग का एक बोर्ड लगा है।

यह इमेज किसी पार्क की है।

और सामने में ही एक ड्रम रेड और वाइट कलर की रखी गई है।

जिस पे थ्री पिल्लोज रखे गए हैं सोफा पिलोज --

और ब्राउन और वाइट कलर की बोर्डरिंग की गई है।

और ग्लास की गेट बनी है।

एक रोड से ली गई है जिसमें एक एसी बस लगी है।

जो इन सभी को नजर रखे हुए हैं।

और बस के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग नीचे भी खड़े हैं।

यह इमेज एक सड़क की है जिसके सामने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एरोनाउटिक्स --

जहां एक लड़का अपने फोन से मिरर सेल्फी ले रहा है।

जहां बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां डांस सीख रही हैं और एक मैम है जो उन सभी को गाइड कर रही हैं।

ये इमेज एक जू की हो सकती है।

और बैक में बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं।

और गुंबच के सबसे ऊपरी में --

यह इमेज एक केक शॉप की है।

तीन लोग बगल में खड़े हैं।

जहां बहुत सारी कार्स को सर्विस के लिए लाया गया है।

मेंटेन कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं।

ये एक स्टेट बैंक की एटीएम की इमेज है।

के पोस्टर का कलर ब्लू और ग्रीन की कलर में है।

ये एक मालगाड़ी का इमेज है।

जिससे ट्रेन चलती है और सामने में ही घास है जो ग्रीन कलर का है।

यह एक छत से लिया गया इमेज है।

जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है।

जहां दूध उत्पादन किया जाता है।

यह इमेज एक एसबीआई की एटीएम की है।

आगे में -- छह सात सीढ़ियां हैं उसके बगल में स्टील की ग्रिल लगाई गई है और रात का समय है।

और फ्रंट में दो कार खड़ी है।

और एसबीआई की बहुत सारी बोर्ड लगाई गई है।

एसबीआई कॉर्नर शॉप भी है।

और ईंट का दीवाल बना है जिसमें गेट के पास वाइट पेंट की गई है।

ओर गेट की कलर हल्का मरीन ब्लू है।

सीमेंट का चेयर बनाया गया है जिस पे --

और आगे में चावल दाल आटे की बोरे रखी गई है।

लेफ्ट साइड में दो बड़े बड़े बोड़े रखे गए हैं।

यहां एक रोड की इमेज है।

साइकिल पर बैठे हुए हैं मास्क लगाकर और बगल में बहुत सारी साइकिल रखी हुई हुई है।

जिसके एंड में सिल्वर फॉइल यूज किया गया है।

सलाद सरियाए गए हैं सजाए गए हैं।

यह पिक्चर किसी जीम का है।

साइकिल और बहुत सारे जिम के इक्विपमेंट रखे गए हैं।

पीछे की दीवाल पे क्रॉस फिक --